ऊपर की तरफ देखने पर एक स्टेज लगी हुई है जिसमें पिले और गुलाबी रंग के पर कपड़े से वे ढका हुआ है ऊपर पट्टिया लगी हुई है।

यहाँ पर एक स्टेज लगी हुई है इस पर जिसके खम्भे पर गुलाबी कलर का कपडा लगा हुआ है पर्दो की पाटिया लगी हुई है नीचे कुर्सियां लगी है कुर्सियों पर सफेद और गुलाबी रंग के पर्दे--